सामने एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी है।

एक औरत दो आदमी अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है।

और दीवार पट्टी बनी है ग्रीन कलर की।

एक मॉडर्न बैंक्स है जिस--

खाते पीते दिखाई दे रहे हैं।

और इन दीवार लोग कत्थई कलर की है।

उनके पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं।

प्रैक्टिकल दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

सब लोग अपने काम में बिजी हैं।

यह एक तस्वीर दिखाई दे रहा है यहां पे लिखा है फ्री हेल्थ कैम।

की फोर व्हीलर खड़ी है--

उसमें फूल लगे हुए हैं।

और लाइटे लगी हुई है ये नया घर बना हुआ है।

और इधर वाल टेबल पड़ी है।

लाल कलर की ट्रे रखी है और फेविक्विक दिखाई दे रहा है।

ये व्हाइट कलर का कुछ रखा हुआ है।

और एक सामने व्हाइट कलर का घर है।

और गमला दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की दीवाल है।

सामने टेबल है उस पर कुछ समान रखा है जैसे बॉटल --

और सामने मिट्टी कलर की चेयर है।

बहुत अच्छा गार्डन लग रहा है।

सजावट कर रहे हैं सब लोग।

रेड कलर का सजा हुआ है कपड़े पहने हुए--

माता त्रिशूल पकड़े हुई हैं।

ये गाड़ी लाल कलर की और व्हाइट कलर की सारी है।

और दीवाल पे लिखा है बेस्ट ।